--और यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे बीच नीचे का कोई नजारा देखा जा सकता है और यहाँ पे नहीं दिखा जो नजारा है वो बहुत ही ज्यादा सुन्दर है यहाँ पे पहाड़ी बनी हुई है ऊपर का आसमान पूरा नीला बना हुआ है ये व्यू पॉइंट --

आसमान थोड़ी सी वाइट लग रही है और ये देखने में बहुत ज्यादा क्लीन लग रहा है सामने का जो झाड़ियां है उसमे बहुत सुन्दर से झाड़ियां उगी हुई है और इसमें बहुत ज्यादा पत्ते नजर आ रहे है और ये थोड़ी सी सन्नाटा लग--

ये रास्ता है और रास्ते के साइड में बहोत ज्यादा गाड़ी के जाम लगी हुई है यहाँ पे बहोत सारे बाइके भी रखी हुई है यहाँ पे ग्रीनरी है और यहाँ पे बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं जो गाड़ी को हटाने का कोशिश करते हैं और चारों साइड से बस जंगल ही जंगल नजर आ --

धूप पड़ने की वजह से गाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा धूप पड़ी है गाड़ियां जो हैं सामने की तरफ एक वाइट है और पीछे एक लौरी नजर आ रहा है जो कि थोड़ी सी--

यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है अंधेरे में कुछ लोग नजर आ रहे हैं ये लोग एक ऊपर के हिस्से की तरफ नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर टीन लगी हुई है यहाँ पर बहुत सारे लोग है कुछ लोग सीढ़ियों के आगे नजर आ रहे।

ये यहाँ पे पत्थरे पड़ी हुई हैथोड़ी सी ग्रीन हरी लग रही है यहाँ पे धुप पड़ने के वजह से देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है ग्रील के बहार एक आदमी नजर आ रहा है जिसके पीछे बैग है और वह सामने की तरफ देख रहा है।